पहाड़ पे पूरी हरी-हरी काई लगी हुई है और पानी पूरा सफ़ेद नजर --

यहाँ से सीढ़ी गई हे तो के लिए आस-पास पेड़ नजर आ रहे हैं।

सामने एक रेस्टोरेंट है आसपास पेड़ लगे हुए हैं येल्लो कलर का एक गमला है उसमे पेड़ लगे हुए हैं काफी बाइके खड़ी हैं।

एक रेस्टोरेंट जिसमे व्हाइट एण्ड ब्लैक कलर का कार्पेट बिछा है वुडन की चेयर है टेबल के ऊपर कपड़े रखे हुए हैं ऊपर फ्लोर पर टीन की चादर डली हुई है।

पंखे लगे हुए हैं और फ्लावर्स और लाइटिंग की लगी हुई हैं।